यह सामने तीन चार लोग एक सी ड्रेस में दिखाई दे रहे हैं और वह कुछ मंदिर टाइप दिख रहा है।